हमें इस फोटो में एक सफेद और लाल कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

जहाँ पे एक ग्राउंड भी नजर आ रहा है।

हमें इस फोटो में एयरपोर्ट का दृश्य दिखाया गया है।

कार भी नजर आ रहे हैं बहुत लोग घूम रहे हैं।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

जहां पे बहुत सारे बच्चे लाल कलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

प्रभु निवास का बोर्ड दिख रहा है।

जहां पे इधर ग्राउंड बना हुआ है।

सामने की तरफ वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप का बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर तोप का रखा हुआ है।

कैरेट रखे नजर आ रहे हैं।

ग्राउंड बना हुआ है जिस पर छोटी छोटी घास लगी हुई है।

एक वैगनार नीली कलर की नजर आ रही है।

यह बहुत सारी शोरूम में लाइट लगी हुई हैं।

नीली कलर की कुर्सी पड़ी हुई हैं जिस पर बहुत लोग बैठे हैं।

एक बाइक के ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है।

बाहर एक पोस्ट ऑफिस का बॉक्स रखा हुआ है।

स्टील के रैक बने हुए हैं जिन पर वॉटर बॉटल कुकर बहोत सारी चीजें रखी हुई हैं।

जहां पे सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ है।